यह एक मंदिर है जिसमें श्री कृष्ण श्री राधे श्री कृष्ण लिखा हुआ है।

अमीनाबाद की दुकान की फोटो है जिसमें सीढ़ी लगी हुई है।

यह किसी बैंक के सामने की फोटो है उसके पास में एक शोरूम है।

और कोटक का ए_टी_एम भी है पास में।

जिसमें बड़ा सा कुलर रखा हुआ है मेजें रखी हुई है कई सारी--

यह किसी स्कूल के रसोई घर की फोटो है।

इसमें बताया गया है कौन कौन खाना बनाता है इसमें उनको रसोइयों के नाम दिए गए हैं।

सामने चारपाई दी गई है। ऊपर मेज रखी हुई है छोटी सी जिस पे हम खाना रख के खा सकते हैं।

ये किसी स्केटिंग रेस की फोटो है जिसमें बच्चे स्केटिंग रेस स्टार्ट करने जा रहे हैं।

ये किसी खदान की फोटो है जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर पहाड़ हैं।

और यहां पे रोड पे लोग खड़े हुए हैं।

इससे सबको पता चल सके अंदर क्या क्या मिलता है।

एक आदमी लेटा हुआ जिसके पैर में चोट लगी हुई है उसने स मोजा पहन रखा--

बेड पे दोनों पैरों पे अह चोट लगी हुई इंसान लेटा है।

जय माता लगा हुआ लिखा हुआ है सामने शेर बनी हुई है माता की सवारी के रूप में।

और सफेद कलर के सोफों के आगे कुर्सियाँ के आगे मेज पड़ी है सफेद कलर की।

और उसे पर्पल और ब्लू कलर से सजावट की गई है सबकी--

कुछ लोग उसके अंदर हैं कुछ लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का--

गाड़ियां खड़ी हुई है और एक ठेलिया खड़ी हुई है।

पुराना सा इस कॉलेज है ये इसकी पुताई अभी नहीं हुई है।

दो दरवाजे है इसके अंदर जाने के मेज पड़ी हुई है।

जिसमें छोटे से मंदिर की फोटो ली गई है जिसमें गौतम बुद्ध की फोटो ली गई है।

मीठा तौलने के लिए तराजू रखा हुआ है उसमें बहोत सारे मीठे रखे हुए हैं।

यह एक मशीन की फोटो है जो स्लिप डालने में काम आती है।

इसपे जय मां वैष्णो आयरन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी कंक्रीट मिक्सर पंप यह महरौनी ललितपुर की है।

इसमें ग्रीन कलर का गेट लगा हुआ है घास बहोत अच्छी सी लगी हुई है।

पौधों में काफी पौधे ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं।